ए_टी_एम के बाहर बहोत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

बहुत से लोक न खड़े हुए नज़र आ रहे है।

मुझे चाय की दुकान भी नजर आ रही है।

ये नजारा देखने में बहोत और अमेजिंग है।

दो व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे पेड़ की डाल दिख रही है और एक ब्रिज दिख रहा है।

कार नजर आ रही है बकरा बकरी नजर आ रही है हरियाली नजर आ रही है पेड़ पौधे नजर आ रहे--

भगवान के फोटोस नज़र आ रहे हैं साईं बाबा का फोटो नज़र आ रहा है लाइट नज़र आ रही है।

इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए है सामने एक कुर्सी टेबल --

एक ट्री पेड़ लगा है कुछ हरियाली दिख रही है।